काफी ज्यादा बड़े बड़े पेड़ हैं। छोटे छोटे पेड़ हैं। यहां पर पत्थर भी पड़े हैं। पानी भी भरा हुआ --

ब्लू कलर की टीशर्ट पहनी है। ब्लैक कलर की पहनी है। वाइट कलर की पेंट --

और कुछ बिल्डिंगे हैं स जिसका कलर सफ़ेद है। कुछ पीले कलर की हैं और यहाँ पर कुछ सीडियाँ भी बनी हुईं हैं।

और यहाँ पर ये दुकान के बाहर फ़ोटो है। किराना की दुकान है जहाँ पर एक सारे बॉक्स रखें हैं कट्ठे रखें हैं।